यहां पर एक बोहोत बड़ा सीढ़ी है बगल में। बोहोत सारे लोग दिखाई दे रहे हैं। पेड़-पौधा दिखाई दे रहा है।

यहां पर एक चित्र दिखाई दे रहा है। देखने से ऐसा लग रहा है कि ये कोई नदी जैसा है। यहां पर सामने थोड़ा सा कचरा जैसा दिख रहा है। बहोत सारे --

यहां पर एक चित्र दिखाई दे रहा है। देखने से ऐसा मालूम पड़ रहा है कि यहां पर कोई रेस हो रहा है। यहां पर बोहोत ही लंबा--

एक दुकान है जो कि बंद है और इस पर लिखा हुआ है और यहां पर जो बैंक है इसका नाम सेंट्रल बैंक --

बड़ा पत्थर जैसा दिखाई दे रहा है। छोटा-छोटा पत्थर है। बड़ा-बड़ा पत्थर है और यहां पर दूर से देखने यहां पर एक --

यहां पर एक चित्र दिखाई दे रहा है। देखने से ऐसा मालूम पड़ता है कि यहां पर एक बहोत बड़ा शोरूम जैसा दिखाई दे रहा है जोकि यहां पर बहोत सारी गाड़ी --